पे बड़ा सा लकड़ी का एक टेबल रखा हुआ है।

अस्पताल का नाम सदर अस्पताल गोपालगंज बताया जा रहा है अस्पताल के बाहर नारियल का एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

ये बिगन बुक सेंटर अस्टेशनरी दुकान है।

फ्रिज अलग अलग रंगों के दिखाई दे रहे हैं।

घर के दूसरी तरफ एक वाइट कलर का इको लगा हुआ है।

इलेक्ट्रिक पोल पर एक एल_इ_डी लाइट दिखाई दे रही है।

पेड़ों के बीच एक ऊंचा वॉच टावर दिखाई दे रहा है।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

जिसमें बहोत सारे बाइक और स्कूटी लगे हुए हैं इसमें सफेद कलर की कुछ कार भी दिखाई दे रही है इसमें भारत का एक झंडा लहरता हुआ दिखाई दे रहा है।